यहाँ कुछ व्यक्ति मिठा खरीदने जा रहे है इस होटल के नीचे पार्किंग जगह है जिनमे--

ताले से बंद कर के गया और बहार एक साइकिल खड़ा है और चपल--

और इधर-उधर लोग हो रहे हैं ।